कुछ लोहे केस तार लगे हुए हैं।

बिछा हुआ है हरी भरी घास दिखाई दे रही है।

कुछ पेड़ खड़े हुए हैं मकान दिखाई दे रहे हैं।

एक तस्वीर लगी हुई है एक टेबल रखी हुई है।

एक चेयर रखी हुई है बेंच रखी हुई है।

यहां पर एक आदमी खड़ा हुआ है इसके सर पर एक कैप रखी हुई है।

यहाँ पर मुझे एक घर दिखाई दे रहा है एक लोहे का दरवाजा दिखाई दे रहा है।

अंदर पंखा लगा हुआ है ग्रीले लगी हुई है गेट पर कुछ लिखा हुआ है।

यहां पर मुझे बहुत सारे पहाड़ नजर आ रहे हैं।

बहुत सारे पेड़ नजर आ रहे हैं नीचे बहुत सारी रेतीली मट्टी पड़ी हुई है।

एक आदमी नजर आ रहा है काफी सारे खिड़कियां नजर आ रही है।